इसके ऊपर फॊल पेपर लगाया है देखने में ये काफी ही टॆस्टी लग रहा है और उसमें जो डेकॊरेट किया है वो भी बोहोत अच्छा है।

एक गार्डन का फोटो है जिसमे काफी सारे पेड़ लगे हुए है जिनके सारे पत्ते गिर कर जमीन पर आ गए है।

वैल्यू एंड वैरायटी यह बिल्डिंग मे काफी सारे कपड़े और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लग रहा है ऊपर काफी सारे मैनेक्विन को कपड़े पहना हुए है नीचे की बात करे तो बाहर एक वॉचमैन खड़ा हैअन्दर एक और --

यह एक फ्रूट और वेजिटेबल शॉप है जिसमें कई तरह के वेजिटेबल और शॉप हैं यहाँ पर रेड शर्ट में एक लड़का अपनी शॉप को मैनेज कर रहा है।

वो ब्लैक कलर के काउच पे बैठा है इस दुकान का थीम काफी ही खूबसूरत है यहाँ पे ब्राउन शेड़ से दुकान को डेकोरेट किया है यहाँ पे एल_ई_डी भी लगे हुए है और ब्लैक कलर का पंखा ऊपर लगा--

यहाँ पर गानों के सिस्टम के साथ लेपटॉप चालू हुआ है कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए है इसमें से एक आदमी ब्लैंकेट पेहना है और एक आदमी बैठ के पढ़ रहा हैं।